चुला है गार्डन बहुत सब बहुत बढ़िया है यहाँ का--

हर तरह का यहाँ सूट मिलता है ब्लू ब्लू ब्लैक सब तरह का सूट यहाँ मिलता है।

तालाब है बहुत बड़ा पानी है तालाब में उसमें हरा हरा--

यह एक कोचिंग सेंटर है यहाँ पे तरह तरह के लड़के लडकियाँ आते हैं।